कुर्सियां है बीच में टेबुल है और वहां पर भी कुछ सामान है साइकिल वगैरह है।

ये एक खुला मैदान है झाड़ा है यहां पे सूरज डूब रहा अदमीया ठहरे हुए हैं यहां पर खुला मैदान है पूरा।

ये कोई रिचार्ज और सिम कार्ड की दुकान दिख रही है एयरटेल फोर जी और वोडाफोन बोल के लिखे हुआ है यहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं कंप्यूटर है।

ये कोई एग किराना शॉप दिख रही है कोई यहां पे बहोत सारे एटमा है साबुना है दाला वगैरा भी दिख रहे किराना शॉप दिख रही यहां एक फैन लगा हुआ है।

ये कोई कारखाना दिख रहा है यहां पे मशीना रखे हुए है डेक्शा रखे हुए और ये डेक्शो पे काम करते शायद।

और मेवे फल में वे अ बहुत सारे अ औरतें च बैठे हुए हैं यहाँ पर जेन्स हैं मीन्स दावत हो रही है यहाँ पर।

ये एक मेडिकल नजर आ रहा है यहाँ पर लैब प लैब य टेस्ट कराते टेस्ट कराते ना यहाँ पे फोन के वो वो दिख रहा है ये।

अ हैदराबाद हैदराबाद की फोटो है ये हैदराबाद का है ये मैप लगा हुआ है यहाँ पे।

ये एक सड़क है लोग आ रहे है जा रहे है झाड़ा भी है यहां पर जो कि ये रेस्टोरेंट की की पोस्टर लगे हुए है।

यह कोई कंप्यूटर की ऑफिस कुछ दिख रही है कंप्यूटर के ऑफिस कुछ दिख रही है ऐसा यहां कंप्यूटर ना रखे हुए और टी_वी चल रहा है वहां पर।

जूसा भी हैं यहाँ पर दवाइयां है बड़ों के बच्चों के सभी के दवाइयां दिख रहे हैं इसमें दवाइयों की शॉप है ये मेडिकल शॉप है ये।

यहाँ पे घर के छत के ऊपर लग रहा है ऐसा दावत हो रही है यहाँ पे दावत हो रही है और कचरे के डब्बे भी हैं पानी के डब्बे भी हैं।

ये कोई घर दिख रहा सड़क के बीचो-बीच सड़क के सड़क पे घर दिख रहा ये एक घर की गेट दरवाजा दिख रहा और झाड़ा हैं व्हाइट कलर का करे हुआ है घर।